बड़ा बड़ा डालान हरयान पिछाड़ी मैदान।

बगलम सफेद डंडा रख्युं डंडा का पिछाड़ी हल्दी वाला पत्तों वाला डाली लगीं चौड़ा पत्ता जै पर।

यखम एक बड़ु सी होटल जे पर एंच खूब बड़ु बड़ु अक्षरों मा लिख्युं वा होटल रंग लाल गेटा ।

यख मा एक पेट्रोल पम्पा जख मा स्कूटी खड़ी होईं।